पत्थर की मूर्ति रखी हुई है वहा उस बक्से पर एक बोर्ड लगाया गया है पीछे की तरफ सफेद कलर का पैंट किया गया है उस मूर्ति को भी काले कलर से पैंट किया गया है वहां पर।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

एक बड़ी सी मैदान दिखाई दे रही हे जहा पर एंगल लगाए गये है वहा कंपाउंड की दीवार भी दिख रही हैं ।

यहाँ पर एक रास्ता नजर आ रहा है जिसके सामने एक गेट दिखाई दे रहा है वहां पर एक खंभा भी दिखाई दे रहा है वहाँ एक साइकल दिखाई दे रही है वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार दिखाई दे रही है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

कितने बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है वहां से दो तीन गाड़िया जाती हुई नजर आ रही है वहां पे दो तीन कमरे भी नजर आ रही है वहां से सड़क--

यहाँ पर एक रास्ता अंदर की तरफ जाते नजर आ रहा है साइड में हैंडल दिखाई दे रहे है| वहाँ पर कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है वहाँ कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर लाइट लटकते हुए--

अंदर की तरफ कुछ पेड़ दिख रहे वहाँ पर नीचे कुछ झाड़िया दिखाई दे रही है आगे की तरफ एक खिड़की दिख रही है।

वहाँ नीचे कुछ झाड़ियाँ दिख रही वहाँ पर पेड़ भी दिख रही आगे एक मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ साइड में एक मैदान दिखाई --

यहाँ पर एक लड़का बैठा खड़ा दिखाई दे रही है वहाँ पर उसके सामने एक कैरेट रखी गई है उसके सामने कुछ मशीन दिख रही है ऊपर की तरफ कुछ लाइट जलती हुई नजर आ रही है उसके आगे भी कुछ आदमी काम करते हुए नजर आ रहें है।